और एक आईना भी रखा हुआ है।

फोटो में बहुत सारा स्टूडेंट और टीचर लोग भी है।

कलर का दीवार लोग पिंक कलर में पेंट कर के हैं।

ये फोटो में एक क्लास रूम भी दिखाई दे रहा है।

नदी का साइड में बड़ा बड़ा पत्थर लोग है।

दो दुकान बंद करके है।

बाहर में व्हाइट और येलो कलर बस भी है।

पीछे बड़ा बड़ा माउंटेन लोग है।